और और कुल के पूजा होता कुल घंटी कुल और निचे कुल रखल ह अउरी क आदमी पूजा करता कुल लोटा भी बा एकदम --

कुल आदमी औरतन कुल नीचे भी कुछ बइठल हउवन। कुल घास और कुछ फूल उल पीला पीला लऊकता। कितना निक लागता। आसमान के नज़ारा भी केतना सुन्दर --